यहाँ एयरपोर्ट जैसा लग रहा है| यहाँ पे लोग आते हैं एयरलाइन के लिए| यहाँ पे देखिये पीछे-आगे वेंटिलेटर है एक टी_वी है।

यहाँ पे लोग आते हैं देखते हैं और क्या टी.वी. है और ए.सी. लगा हुआ है और लोग यहाँ घूमने आते हैं देखते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है।

ये खाने के डिशेज हैं यहाँ पे दो चम्मच है और एक ये प्याज़ ओनियन नेमो लेमन है।

ये आइस पॉन्ड्स है ये एक आइस क्रीम का दूकान है। यहाँ पे बच्चे बहुत इसे पसंद करते है ये आइस क्रीम खाने यहाँ पर आते है यहाँ पे आइस क्रीम का बहुत सारे वैरायटी है।

यहाँ पे आइस क्रीम बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं बच्चें बहुत पसंद करते हैं तो उन्हें ज़िद के लिए यहाँ पे लाना ही पड़ता है और यहाँ खिलाना ही पड़ता---

यहाँ पर एक मंदिर है यह यह एक पीछे जंगल है आगे एक पोल है और यहाँ पर ढेर सारे जंगल एक आम का पेड़ है बड़ा-सा और यहाँ पर लोग घूमने आते है यहाँ पर लोग घूमते है----

आप देख सकते हैं कि क्या मेहनत करता है ये? ग्रीन ग्रीन कितनी घास है यहाँ पे बेचारा खेती करता है।

ये किसी का गेट लग रहा है पीछे एक टावर टाइप का लग रहा है कित्ता मस्त लग रहा है आगे सोलर पैनल लगा हुआ है ये घर है कितना सुन्दर लग रहा है इसका गेट दो द्वार है इसमें----

ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए आते है गाड़ी में पेट्रोल लेते है पेट्रोल भरते है तभी गाड़ी चलती है पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है यहाँ पे----

यह एक टेम्पल है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। ये माना जाता है की यहाँ यहाँ पे लोग जो मांगते है वो पूरा होता है ये विष्णु जी का टेम्पल है।

यहाँ पे देखिये आप कितना सुन्दर ये शॉप है एक प्रकार का यहाँ पर एक चड्डी पहना आदमी जा रहा है। एक लड़की खड़ी है स्कूटी पे और पीछे उधर भी एक स्कूटी लगी हुई है और गाड़िया भी हैं।

ये डी.जे. बजेगा तो कितना मज़ा आएगा न। आपको हमको भी आएगा मज़ा। ये डी.जे. का सेट है और ये डी.जे. भी कितने सारे लगी हुई है। पे डी.जे. बजेगा तो मुन्ना नचेगा होली वाली बात है।

ये एक गौतम बुद्ध का फोटो लगा हुआ है। यहाँ पे भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और यहाँ ऊपर में देखिए कितना अच्छा दृश्य है ये प्राचीन काल के भगवान ए ए ये साधना कर रहे हैं।